और गार्डन में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

दुकान का मेन गेट शीशे का है जो कि दुकान के उपर शीशे पर फोर जी लिखा है।

घर के सीलिंग मे व्हाइट कलर किया गया है।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान के दीवार की कलर ब्लू है और बॉर्डर में रेड कलर किया गया है।

यहां पर एक हाथ भी है और हाथ में एक फुल लिए हुए हैं जोकि फूल का कलर पिंक है।

सीलिंग में पंखा और बल्ब लटका हुआ है।

यहां पर ढेर सारे टेबल और चेयर रखे हुए हैं।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

रोड के किनारे में दुकाने भी लगा हुआ है।

यही पर एक रेड कलर का बैग भी रखा हुआ है।

उसके नीचे में ब्लैक कलर का ग्रिल है और उसके अंदर में ढेर सारा बोरी रखा हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड पर एक बस लगा हुआ है और बस का कलर ब्लू और वाइट है।

बस में ढेर सारे व्यक्ति हैं और बस के नीचे में रोड पर दो व्यक्ति खड़े हैं।

उसके दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है जो की पीली कलर की है और वहीं पर एक पोल है।

पहाड़ के नीचे में ढेर सारा पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

की दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर मे करकट लगा हुआ है।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर के पास ढेर सारे व्यक्ति हैं और मंदिर के बगल में एक तालाब भी है।

ऊपर में वाइट पुटी किया हुआ है और इस हाल में ढेर सारे टेबल और चेयर रखे हुए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है रोड के किनारे एक दुकान है।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान में ढेर सारा अलमारी बना हुआ है और अलमारी में ढेर सारा कुट सजा कर रखा हुआ है।

इसकी सीलिंग में बल्ब लगे हुए हैं और इसकी सीलिंग में पंखे भी लटके हुए हैं।

यहां पर एक टेबल है टेबल पर ढेर सारा चीज़ें रखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के सामने एक लाल कलर की फोर व्हीलर लगी हुई है।

इस रूम में तीन शेरवानियां रखा हुआ है।